यहा पर कुछ बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही है यहा पर बहुत सारी व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है यहा पर बहोत सारी गाड़िया बाइक दिखाई दे रही हैबहोत ही अच्छा लग रहा है।

ये एक बहुत बड़ी जीम सेण्टर है जहाँ पर बहुत सारी मशीने दिखाई दे रही है जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो की अपनी फोटो खींच रहा है और जहाँ जिम कवर रखी हुई दिखाई दे रहा है।

एक जिम सेंटर है यहाँ पर जिम करने वाले बहोत सारे मशीन रखे हुए है बहोत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।